आगे एक बैंक का चित्र लगा हुआ है। एक बंदा खड़ा हुआ है बै मोटरसाइकिल के पास।

साइड में हरे कलर के पेड़ खड़े हुए हैं और --